जहां तक हरे हरे पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे पुदीने की पत्तियां नजर आ रही हैं कुछ रंग का रंग गहरा हरा है और कुछ हल्के पीले--

इस तस्वीर में मुझे रेलवे स्टेशन नजर आ रहा--

इस तस्वीर में मुझे एक गार्डन नज़र आ रहा है जहां पर बहुत सारी हरी भरी घास लगी हुई है मुझे यहां पर एक महात्मा बुद्व की एक मूर्ती भी --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

स्टेज नजर आ रही है जहां पर मुझे बहोत सारे बच्चे डांस करते हुए दिख रहे हैं।

यहां पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है और लकड़ी की बनी हुई है।